यह दृश्य एक डांस बार का दिख रहा है जिसमें की चारों तरफ बहोत ही रंगीन लाइट लगाई गई।

दृश्य में हमें एक इमारत दिख रही है जो कि बहुत पुरानी इमारत लग रही है।

दृश्य में हमें एक इमारत दिख रही है जिसका रंग सफेद दिख रहा है।

और यहां साइड में कुर्सियां भी रखी गई हैं और एक बैनर भी लगाया--

यहां बगल में बहुत सारे कुट के डिब्बे रखे गए हैं जो की बजाज कंपनी के हैं।

दृश्य में हमें पीछे की तरफ एक काले रंग का नेट दिख रहा है।

यहां बगल में एक गेट भी लगाया गया है।

हरे रंग से डिजाइन बनाई गई है और दीवार पर हैप्पी बर्थडे लिखा गया है।

और यहां पर बहोत सारे पर्दे लगाए गए हैं बस के ऊपर आर के ट्रैवल्स दिखाया गया है।

यह एक लाइब्रेरी का दृश्य दिख रहा है जिसके चारों तरफ बहुत सारी किताबें रखी गई है।

का दृश्य दिख रहा है जहा पर एक बहुत बड़ा सा पेड दिख रहा है।

और यहां पर एक बैनर भी लगाया गया है नीचे की तरफ सफेद रंग के टाइल्स भी लगाए गए हैं।

यह एक शादी का दृश्य दिख रहा है जोकि एक शादी के हाल का है।

जिसके ऊपर गुलाबी रंग की लाइट जा रही है यहां दो लोग खड़े है।

जिनके के ऊपर बहुत तरह की सब्जियां रखी गई है यहां पर हमें बैगन टमाटर नींबू गाजर और भी बहुत तरीके की सब्जियां दिख रही है।

और यहां पर बहुत सारी गाड़ियां रखी हुई है हमें गाड़ियों का रंग सफेद दिख रहा है।

और यह इमारत का रंग हमे सफ़ेद दिख रहा है यहां पर ब्लू रंग का करकट भी लगा हुआ है।

इस दृश्य में हमे एक डॉक्टर का क्लीनिक दिख रहा है जिसमें की सामने की तरफ एक कुर्सी लगाई गई है।

और यहां एक काले रंग का टेबल रखा हुआ है जिसके ऊपर बहोत सारे सामान रखे गए हैं।

यह एक महल का दृश्य है जिसकी दिवालों का रंग पीला हो चुका है।

पीछे की तरफ घास भी दिख रहे हैं और यहां पर दो लाइटे लगाई गई है।

इसका रंग काला और सफेद दिख रहा है और यहां पे लाल रंग का गद्दा रखा हुआ है।

ऊपर में यहां पर होटल के नाम का बोर्ड भी लगाया गया है नीचे एक बाइक खड़ी है।

इस दृश्य में हमे एक इमारत दिख रही है जिसका रंग सफेद दिख रहा है।

इसके पास एक पेड़ की डालियां भी दिख रही है नीचे की तरफ बहोत सारी बाइके रखी गई है।

इसके ऊपर गोल्डन रंग से डिजाइन बनाई गई है।

गाड़ियों का रंग सफेद और काला दिख रहा है यहां आस पास में शीशा लगाया गया है।